केक में काफी सजावट की गई है।

पनीर गोपाल का लिया गया है।

यह फोटो दोपहर के समय का है।

अन्नी फंक्शन का प्रतीत होता है जिसके में दो व्यक्ति बड़े स्टाइल के साथ खड़े हुए हैं।

जो काफी सुंदर लग रही है तथा स्टेज के सामने काफी हरे भरे गमले--

रा जिसके साइड में एक ऊंचा पहाड़ भी है।

हुए हैं इसमें पानी भी काफी साफ नजर आ रहा है।

इसमें आधी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं।

लोगों के चलने के लिए काफी--

एक औरत जो हाथ द्वारा उन पेड़ पौधों को पानी दे रही है।

यह फोटो एक एच_डी_एफ_सी बैंक के सामने का है।

यह दुकान काफी बड़ी है।

काफी बड़ा गार्डन जिसमे काफी हरी भरी घा--

इस फोटो में मुझे काफी व्हीकल दिख रहे हैं जिनमें कुछ गाड़ियां व कुछ बाइ सिकल दिख रही है तथा --

दिन के समय लिया गया है।

जिसके सामने एक कुर्सी डली हुई है।